इस चित्र में जो है एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है रेलवे स्टेशन के बाहर जो है बहुत सारी रिक्शा खड़ी हुई है ।

पीछे एक फैक्ट्री है रास्ते पर एक साइकिल खड़ी हुई है और लोगों ने हैक पहन रखी है